और यहां बहुत ही मनमोहक दृश्य है।

ये तस्वीर एक आइसक्रीम पार्लर की है।

बगीचे में कई तरह के पेड़ पौधें और फूल लगे हुए है।

ऊपर के मंजिल पर शायद घर हैं।

कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है।

दुकान पर कई तरह की मिठाईयां सजी

मिठाई को एक कांच के शोकेस में सजाया गया है।

घाट पर कई दीपक जल रहे हैं जो एक सुन्दरी दृश्य है।

इसके आगे पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक ब्यूटी पार्लर का तस्वीर है।

वस का वातावरण शांत लग रहा है।

लकड़ी का टेबल दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान में बादल दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

दो चार लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीचे मैट ब्लैक कलर का है।

में एक लड़की ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

इसमें एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है

लोहे के रेलिंग मकबरे की सुरक्षा के लिए लगाया गया।

यह एक कपड़े के दुकान की तस्वीर है जिसमें तरह तरह के कपड़े रखे हुए हैं।

और उसका नाम डेली डे हाउस है।

इस तस्वीर में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

ल लड़के ने एक बेग टांग रखा है।

पीछे बहुत बड़ा आसमान दिखाई दे रहा है।

छोटा सा रास्ता दिखाई पड़ रहा है।

ये तस्वीर एक मॉल की है जो रिलायंस का है।

रेस्टोरेंट साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

इसमें दो फिलिंग इस्टेशन हैं।